ये फोटो ब्लैक एण्ड व्हाइट हमे यहाँ शो हो रही हैं। जहाँ पे हमे पानी दिख रहा है जो आधा ग्रीन और आधा ब्लैक दिख रहा है और ग्रीन कलर के ट्रीज हमें दिख रहे हैं ग्रासेज हमे दिख रही हैं।

पहले एक स्विमिंग पूल शो हो रहा है जहाँ बहुत जादा स्लाइड्स हमे यहाँ शो हो रही हैं ।

ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमें यहाँ पे शो हो रही है।

और हमें यहाँ पे बहोत सारे पेड़ हमें यहाँ शो हो रहे हैं। बिल्डिंग में हमें बहोत सारी विंडोस गेट कॉरीडोर और सब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। रास्ता दिख रहा है। बहोत से ग्रुप --

ट्रीज हमे यहां पर दिख रहे है बैनर्स यहां पे दिख रहे दिख रहे है --

ग्लाससेस शो हो रहा है डोरमेट शो हो रहे है कप शो हो रहे है बर्तन हमे यहाँ पे बोहत से ज्यादा बहुत ज्यादा हमे बर्तन यहाँ पे शो हो रहे है कुछ पैक है कुछ ओपन है।

एक मॉल की फोटो है। जहाँ पे हमे मैगी शो हो रही हैं मसाले शो हो रहे हैं बहोत से यहाँ पे प्रॉडक्ट हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं और हैंडवॉश शो हो रहे हैं। सेनिटीजर हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तेल की बोटेल्स हमे ऑइल बोटेल्स हमें यहाँ शो हो रही हैं।

और हमे बैनर टाइप दिख रहा है अंदर कुछ लोग हमे यहाँ दिख रहे हैं और ये यहाँ पे हमे एक डिवाइडर शो हो रहा हैं मशीन सी हमे शो हो रही है और हम

यहाँ पे हमें एक मेला जैसा दिख रहा है जहाँ बाहर बलून्स लगे हैं।

बहुत सारे घर हमें दिख रहे हैं गाड़ियां हमें दिख रही है कुछ पौधे यहां दिख रहे हैं जो थोड़े सुख हैं थोड़े गिले हैं और पीछे हमें थोड़े पेड़ दिख रहे हैं हमें यहां गाय दिख रही है कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं लाइट के खंभे हमें यहां शो हो रहे हैं।

यहां पे इस मॉल का नाम लिखा है यहां पे चप्पले दिख रही है सैंडल्स दिख रही है सूट्स दिख रहे हैं गाउंस दिख रहे है टॉप्स दिख रहे है दिख रही है।

यहाँ पे हमें एक मंदिर शो हो रहा है जहाँ पे मंदिर भगवान के मंदिर हैं | कुछ बैनर्स लगे हैं।

यहां पे हमे एक मन्दिर सा दिख रहा है जहां बहुत से लोग- कुछ लोग हमे यहां दिख रहे हैं फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है और यहां पे ग्रासेस है और कुछ ब-अ-म--